यहाँ पे ब्लू (blue) कलर (color) की एक डेक्स (desk) लगी हुई जिसके सभी के अलग अलग केबिन बनाये गए है सामने तीन सट्टार लगाए गए है जो की उठी हुई है .